और उन पर खाने का सामान रखा हुआ है और यहां पर कितने ही सारे डस्टबिन रखे हुए हैं।

और यहां पर काफी सारे गमले रखे हुए हैं जिनमें।

यहां पर एक मस्जिद है और यहां पर आसपास काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर सामने एक स्टेज लगी हुई है।

और यहां पर कुछ मशीनें रखी हुई हैं।

इस रूम में काफी सारे सोफे रखे हुए हैं।

और यहां पर टेबल रखी हुई है।

और यहां पर आसपास और भी दुकान है।

और यहां पर कुछ मशीनें धरी हुई हैं।

और पीछे एक कमरा बना हुआ है गेट है इसमें।